और इसके बास बड़े-बड़े से पेड़ है।

जहाँ पे कबर्ड्स में बोहोत सारी किताबें रखी हुई हैं और सामने बोहोत सारे चेयर --

और इसके आस-पास पौधे और पेड़ भी लगे हुए हैं। ये बोहोत सुंदर लग रही है और एक --

ट्रैक्स दिख रहे हैं। बहोत प्यारा सा खुला सा नीला आसमान दिख रहा है। एक रेलवे जंक्शन है।

और एक बस भी देख सक रहे है तो ये एक बस स्टॉप है। जहां लोग --

अतराफ में को चेंजिंग रूम्स है और आस-पास में बहोत सारे पेड़ और पौधे है।

सूरज भी अच्छे से दिख रहा है।

जहां पे लोग पानी के अंदर जा रहे है। तीन महिला है और एक आदमी है। आदमी काले रंग के कपड़े पेहना हुआ है और दो महिला लाल रंग के कपड़े पेहनी हुई है।